बेड लगा हुआ है इसपे एक चेयर है चेयर पे टेबल फैन --

और बहोत सारे स्केच पेन्स वैगेरा हैं।

एक उम कहते हैं इसका नाम भूलक्कड़ है यहां पे अलग अलग टाइप्स के--

यहाँ पे मंच पे बहोत सारे मुख्य अथितियां भी शामिल--

ठेले लगे हुए हैं जिसपे फ्रूट्स वगैरा बेचे जा रहे हैं रिक्शा है।

वो है और यहाँ पे बहुत सारे यात्री आ-जा रहे हैं बाइक से पैदल भी हैं एक लड़की दिख रही पैदल मास्क लगा के।

ये जिम के अंदर की फोटो है इसमें एक बंदा है।

बहुत बड़ी मच्छीयां हैं मच्छी को देख लग रहा है कि ये कतला या रूहु है जनरली यह लोकल लोकल जगहों पे पाया जाता है तालाब वगैरह में।

पेन वगैरा दिखा रहा है अलग अलग टाइप के पेन है।

जिसमें बहोत सारी लड़कियां और लड़के--